और लेडीज सब कोई पसंद करेला खाय में अच्छा लागला टेस्टी लागला इ टाउन में पावल जा ला।

ये एक वाटर पार्क बा यहाँ पर बहुत दूर-दूर से लेइका शियान बूढ़ा लोग आव लन और बहुत अच्छा से मौज-मस्ती करलन और पिकनिक मनाते हैं।

इसमें ना तो पेट्रोल ना डीजल भरवाने का जरूरत है । यह सिर्फ बैटरी से चलता है ।

यह एक वाटर पार्क है यहाँ पे बच्चे नौजवान स्वीमिंग के लिए आते हैं।

यह एक सरकारी प्रशासनिक भवन है।